तथा यहाँ पर एक कार बन रही है।

जो कि उसकी रिपेयरिंग हो रही है यहाँ पर एक ब्लू कलर का डिब्बा रखा हुआ है।

कुछ टायर रखे हुए है जमीन जो है वो भूरी है।

जो यहाँ टीचर है उन्होंने सफेद कलर की वस्त्र पहने है बच्चों ने काले नीले हरे तथा वस्त्र पहने है।

और यहाँ पर एक सीट दिख रही है।

और यहाँ छोटे - छोटे अ चक्र लगे हुए है।

और यहाँ पिछे दिवार में चित्रकरी हो रखी यहाँ पर निचे जिसकी दिवा फर्श हैं --

देखो यहाँ पर पेड़-पौधे लगे है मिट्ठी यहाँ पर भूरे रंग की है बहोत सड़े लोग एक झुंड में खड़े हुए है।

यहाँ की फर्श भूरी है रात्रि का समय हैं।

तथा यहाँ पर जो इसकी बाउंड्री खींची गई है वो पिले तथा नीले कलर की हैं।

जैसे की मैं देख पा रही हूँ यहाँ पर यहाँ पर झिल है तथा यहाँ पर छत्रक नुमा बांस से बना हुआ हैं।

त्र यहाँ पर लाल कलर से लिखे हुए और ये --

पर्पल कलर की शर्ट तथा काले कलर की पैंट पेहनी दूसरे ने सफ़ेद कलर की शर्ट पेहनी हैं और यहाँ पर दो बावल रखे काले--

जैसा की मै देख पा रही हूँ ये पहाड़ी नुमा आकृति का बना है।

जैसे की में देख पा रही हूँ यहाँ पर एक लड़के ने नृत्य कर रही है जिसने अ चमकदार साड़ी पेहनी है ऑरेंज कलर की--

पैर में रंग लगाया हुआ है पीछे यहाँ पर लाल कलर के बोर्ड में लिखा हुआ है आ लड़की ने --

जैसे की मै देख पा रही हूँ यहाँ पर एक लड़का सेल्फी ले रहा हैं अपनी मिरर सेल्फी --

और अगल-बगल पेड़-पौधे लगे हुए है।

और यहाँ जो पत्थर है वो काले कलर के है।

और यहाँ पर छोटे-छोटे घाँस उगे है इसमें पानी के पत्थरो में--

पानी है और ये झिल है जो नीले कलर तथा हरे कलर की दिख रही है।

पीछे की दिवार है वो भी सफ़ेद कलर तथा काले कलर से शेडेड है।

जैसे की में देख पा रही हूँ बहोत सारी ऑटो खड़ी हुई है यहाँ मिट्टी का रंग है जो भूरा है।

ऊपर एक हरे कलर की सॉल ओढे हुए है पीछे पेड़ - पौधे लगे हुये हैं।

जैसा की मैं देख पा रही हूँ यहाँ पर रोड है और एक ऑटो जा रही है एक बाइक जा रही है।

वाइट कलर की जाली लगी हुई है ऊपर नीले कलर का झुला बना है जिसमे पैंट --

अलमारियाँ बनी हुई है निचे फर्श जो है वो भूरे कलर की है।

तथा यहाँ पर बहुत सामान है।

यहाँ पर ईमारत बना रहे है और यहाँ पर --

जैसे की में देख पा रही हूँ यहाँ पर एक झरना है तथा कुछ पक्षियाँ उड़ रहै है।

मट मैटी मिट्टी हुई है जो कि भूरे रंग की है सफेद--